ये एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे ए_सी लगी हुई है और एक चेयर रखी हुई है।

पालर बना हुआ हे जहाँ पे स-- का पालर का जो प्रोडक्ट यूज़ होतें हें जो क्रीम्स यूज़ होती हैं जो मसीन्स यूज़ होतीं हैं |

यहाँ पे आये है।

और यहाँ पे घर ग्रहस्ती का सामान मिलता है जो घर ग्रहस्ती का--

पेड़ लगे हुए है बहोत बड़े-बड़े वाले और बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

यहा पे एक पहाड़ बना हुआ है और पहाड़ के आस पास बहुत सारा घंग घनघोर--

मोबाइल में सेल्फी की साइड देख रही है। और एक लड़का खड़ा हुआ है बाइक लेकर--

वहा पे पो वहा के पोस्टऑफिस तक पहुंच जाती है।